यहाँ पे पीछे एक अंधकार दिखाई दे रहा है ऊपर से लाइट आ रहा है बहुत सारी कुर्सी दिखाई दे रहा है।

से ब्लू कलर का एक सीडी दिखाई दे रहा है दोनों साइड मे पर्दा है और पद-पर्दा में कुछ लाइट ।

यहाँ पे घर दिख रहा है और उसके छत मे भी एक घर है खुला आसमान है सामने एक कार है दो टैम्पू खड़े है एक गाड़ी मे कुछ दो आदमी कुछ भर रहे है।

यहाँ पे एक लंबा लंबा बैठने के लिए खाट रखा हुआ है खटिया उसके सामने टेबील है तकिया रखा हुआ है लंबा लंबा वाला डिजाइन वाला है घर एक--

यहाँ पे एक सफेद कलर की दीवार दिख रहा है आईनॉक्स लिखा हुआ है इंग्लिश में।

यहाँ पे एक अंधकार घर दिख रहा है जहा पे बहुत सारी कुर्सी लगा हुआ है साइड में कुछ अ- दो-एक दो लाइट दिख रहा है एक पर्दा है जिस में भी लाइट दिख रहा --

खुला आसमान दिख रहा है बड़ा सा लाइट दिख रहे है दोनो साइड मे बहुत सारे घर है।